नीचे पार्किंग दी हुई है दो व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहे हैं ।

जहां पर एक बोर्ड पे प्लॉट नंबर वन सिक्स्टी वन ओखला पी_एच थर्ड --